बहुत लेडिसे है यहां पे रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं बच्चे भी हैं बच्चे भी बहुत घूम रहे हैं यहां पे।

यहां पे एक बहुत बड़ा सारा मकान दिखाई दे रहा है शर्मा जी का मकान दिखाई दे रहे है यहां पे --

यहां पे खरीदने के लिए बहुत सारी भीड़ है यहां पे।

ऐसे बहुत बड़ा सारा पेट्रोल दिखाई दे रहा है यहां पे--

और एक तरफ कुलर पड़ा हुआ है यहां पर उसमें भी समान है एक नीला सा बोर्ड लगावे सफेद अक्षरों में लिखा हुआ है यहा पे --

नीचे भी कपड़े है दिखाने के लिए कैसे चाहिए और कैसे नही है बहुत भी पड़े है।

लोग बाग बहुत की भीड़ इकट्ठी हो रखी है देखने के लिए यहां पे जयकारा लगाने के लिए बहुत भीड़ हो रखी है जयकारा लगा रहे हैं यहां पे।

तीन ट्रेन दिख रही बड़ी सारी नीले कलर की खिड़कियां हैं पीला कलर करा हुआ इनपे लाल कलर करा हुआ यहां पे --

काले कलर की और सफेद कलर की हरे कलर से रस्से से बंधी हुई है यहां पे वो घास खा रही है घास पड़ा है।

वो बड़ी जगह है यहां पे छोटी छोटी खिड़कियां है गेट खूब सारे लगे हुए है यहां पे बड़ी चौड़ी लंबी है यहां पे --

पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं दो लाइटें लगी हुई है।

और यहां पे लोग बहोत खड़े भी हैं कोई आजू बाजू पेड़-पौधे भी हैं और गाड़ियां भी--